देखिए यहा पर बहुत बड़ा एक स्कूल दिखाई दे रहा है यहा पर बहुत सारे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं और ये सब बच्चे लोग यहा पर डांस करते दिखाई दे रही है पीछे स्कूल बस भी खड़ी हुई है यहा पर हरे-हरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

देखिए यहा पर बहार एक शॉप दिखाई दे रही हैशॉप के अंदर बहु लड़के बहार लड़के खड़े दिखाई दे रहे है ओर शॉप के अंदर ग्रीन-ग्रीन दीवाल और ब्लू लाइट दिखाई दे रही है।

देखिये रास्ता टाइम है. हमे यहाँ पर एक ढाबा दिखाई दे रहा है यहाँ पर टेबल कुर्सी हमे रखी हुई दिखाई दे रही है।